यह वजन करने वाला काटा जैसे दिख रहा है काफी भीड़ भाड़ रही है लोग भी दिख रहे हैं।

यह एक मंदिर सा दिख रहा है।

जिसके दरवाजे पर गैलरी में एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ है।